कैमरा छे। हथा न पहुंचा जीती पकड़ाल छे। ईटा ला गिराल छे।

गाछ छे लागे छे की घरा में लकड़ी छे। लकड़ी डिजाइन बनावल छे।

घर छै लाल रंग यार कपड़ा छै सादा रंग यार कपड़ा छै।

गाड़ी लाचे स्कूल ये लाल --

बहुत आ बल्ब छै फोटो बहुत अच्छा घर छै।